इस इमेज में एक तीन मंजिला मकान देख रहा है और एक पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है जो कश्यप क्लीनिक लिखा हुआ दिख रहा है।

मकान में शीशों का प्रयोग किया गया है और दीवालों के चारों तरफ पोस्टर लगे हुए दिख रहे हैं।

मकान की छत पर एक टीन पड़ी हुई दिख रही है आसमान कलर का कलर नीला दिख रहा है।

तथा एक पंखा लगा हुआ दिख रहा है।

एक व्यक्ति के शर्ट का कलर सफेद है एक पेड़ लगा हुआ दिख रहा है।

एक पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है जिस पर सरस शोरूम लिखा हुआ दिख रहा है।

इस इमेज़ में एक सफेद टी शर्ट पहने हु्ए व्यक्ति खड़ा हुआ दिख रहा है व्यक्ति के हाथ में फोन है।

मकानों की दीवालों पर कुछ हरी भरी घास दिख रही है और पेड़ पौधे लगे हुए दिख रहे हैं।

व्यक्ति ऐसे खड़ा है जैसे फोटो क्लिक करवा रहा हो।

यह दृश्य एक नदी किनारे का लग रहा है नदी के किनारे बहोत सी नाव पड़ी हुई दिख रही है व बहोत से व्यक्ति दिख रहे हैं।

नदी के पास में हरी भरी घास और कुछ पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं।

कुछ बैलून रखे हुए दिख रहे है बैलूनों का कलर लाल व काला है।

एक बाथरूम बनी हुई दिख रही है बाथरूम के चारों तरफ सीसा लगा हुआ दिख रहा है।

जैसे टेडी बेयर व गुलदस्ते रखे हुए दिख रहे हैं एक कुर्सी पड़ी हुई दिख रही है।

बैडू देख रहे हैं बैडू पर कुछ पर्दे पड़े हुए दिख रहे हैं।

टेंट के सामने बोहत सी कारे खड़ी हुई दिख रही है व बोहोत सी मोटरसाइकिलें खड़ी हुई दिख रही हैं।

और नदी के पास में बहुत से पेड़ लगे हुए दिख रहे है।

इस इमेज में दो मंजिला मकान बना हुआ दिख रहा है।

मोटरसाइकलों पर हैमलेट रखा हुआ दिख रहा है।

कुर्सियों का कलर काला है और छतों से पंखे लटकते हुए दिख रहे हैं।

यह दृश्य एक बुकस्टॉल का लग रहा है जहां बहोत से रजिस्टर व किताबें रखी हुई दिख रही हैं किताबों व रजिस्टरों का कलर लाल दिख रहा है।

यह दृश्य एक पार्क का लग रहा है जहाँ बहुत से बच्चे बैठे हुए दिख रहे हैं।

स्कूल को ब्राऊन व पीले रंग से पेंट किया गया है।

यह दृश्य एक सोरूम का लग रहा है जहां बहोत से सोफे पड़े हुए दिख रहे हैं।

फूलों के गुलदस्तों में बहुत से फूल हरे हरे दिख रहे हैं।

सामने एक खटिया पड़ी दिख रही है खटिया पर बहुत ही सामान लगा हुआ दिख रहा है जैसे आभरी वगैरा रखी हुई दिख रही है।

और बहुत से पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं ढाबे को छप्पर द्वारा बनाया गया है।

एक बाइक खड़ी हुई दिख रही है वह एक ट्राली खड़ी हुई दिख रही है जो लाल रंग की है और बहोत से पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं।

एक व्यक्ति व एक औरत खड़ी हुई दिख रही है। औरत लाल रंग की साड़ी पहने हुए दिख रही है और व्यक्ति गुलाबी रंग की शर्ट पहने हुए उनको एक चाबी दे रहा है।

यह दृश्य एक ग्रॉसरी स्टोर की है जिसका नाम आराध्या ग्रॉसरी स्टोर है।

स्टोर के ऊपर एक नीले रंग की चादर पड़ी हुई दिख रही है।

एक व्यक्ति ब्लैक टीशर्ट पहनकर फोन पर बात करते हुए पंजाब नेशनल बैंक से बाहर की ओर आ रहा है।